यह एक शादी का डेकोरेशन मम आ का समान हैं जो शर्मा लाइट डेकोरेशन है। यह एक जो पास मोजूद है। यहां पर --

इसके उसके बिल्डिंग की सुरक्षा के लिये चारों तरफ चार दिवारी भी बनाई गयी हैं और एक इसके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे फूल वगैरा भी लगाये गए हैं जो देखने में काफी सुन्दर दिखता है।

दवाईयों में अ डिस्काउंट भी दिया जाता है और काफी अच्छा और बढ़िया क्वालिटी की दवाई यहाँ पल लपलब्ध होती हैं। यहाँ पर बिना डॉक्टर के एप्लीकेशन के दवाई नहीं दी जाती है। हमें यहाँ पर ज्यादा दवाई लेने की विशेष छूट भी मिलता है।

और अलग-अलग तरह के फुल पेड़ -पोधे भी लगाये हैं और यहाँ पर फूलो को कटिंग करके एक शेप दिया गया है जो बहुत ही बढियां देखने में लग रहा है।

यह एक मार्किट है जो शाम के समय का नज़ारा देखने मे बोहोत ही बढियां और बोहोत ही भीड़ भाड़ दिख रहा हैं और इस शॉप पर क्लॉक टावर भी लगाया गया है जो काफी चारो साइड घड़ी लगाई गयी हैं आ और इस क्लॉक टावर पर --

यह एक कैफ़े है जो बहुत बढ़ियाँ और काफी अच्छा कैफ़े है और काफी बड़ा कैफ़े है। यहाँ पर इस कैफ़े को सुन्दर दिखने के लिये यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंगें लगाई गई है और इसके सीलिंग पर बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटे भी लगाई गई है। यहाँ पर बै --

यह एक सिग्नल ऑफिस है जहाँ पर अ बहुत बड़ा और यहाँ पर सिग्नल डिपार्टमेंट का काम होता है और यहाँ पर रोड के जो सिग्नल उसके कुछ --

ऐ टाइटेनियम जिम है जो यहाँ पर बोहोत अच्छा ट्रेनर भी रहते हैं जो आपको कैसे व्यायाम करना है किसे चीज के लिये क्या व्यायाम करना है। यह भी बताया जात --